हमे एक खंबा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बिजली की वायर भी है और उसके साथ ही बहोत सारे घास है।

ये हमें शिमला का मॉल रोड नजर आ रहा--

हमें यहां पर बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहे--

और उन्होंने उसके ऊपर बहोत सारी फाइल्स यानी कि लिफाफे रखे हुए।

जिसके ऊपर एक टेबल एक कुर्सी और एक--

ये कमरे के ऊपर एक अलमीरा रखी हुई है जो की काफी सुंदर लग रही--

उसके सामने एक मग और दो पानी की बोतल भी रखी है।

सड़क में एक ऑटो आता हुआ नजर आ रहा है।

गमछा लिए ऑटो वाले से बात कर रहा--

बिल्कुल भी स्लेटी कलर का दिख रहा है और उसमें वाइट सफेद रंग की खिड़कियाँ भी नज़र आ र --

सामने एक सोफा लगा है जिस पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और लाइटों की सुंदर डिजाइनिंग बनी हुई--

इसमें बहुत सारी सीढ़ियांए ऊपर की ओर चली हैं और उसके सामने लिखा हुआ है।

और इसके साथ ही कुछ घर नजर आ रहे हैं।

साइड में कुछ बाइक्स पार्क हुए हैं साथ में एक--

और ब्राउन कलर की कुर्सियां भी--